इमेज में बिल्डिंग है बिल्डिंग पर बैनर लगा हुआ है आ लाइट्स लगी हुई है आ रेलिंग पर फूलों की लड़ियाँ लगी हुई है।

बाइक्स खड़ी है कुछ लोग खड़े है पेड़ लगे है ।

आ दोनों रिक्शा पर फूलो कि माला कि लड़िया लगी हुई है | आ बैलून से डेकोरेटेड गेट बना हुआ है कुछ लोग खड़े हैं।

फुल और पत्तियों से डेकोरेशन किया हुआ है एक लड़का खड़ा है माता जी के पैर छू रहा है।

टिश्यू पेपर्स रखे हुए है सोफे लगा हुआ है विंडोज है विंडो पे पर्दा लगे हुए है लाइट्स लगी है ।

इमेज में मंदिर है अ मंदिर पर कलरफुल लाइट्स से डेकोरेशन किया हुआ है ।

अ बिल्डिंग मे अंदर की तरफ ए ऑटो रिक्शा खड़ी है लोडिंग रिक्शा खड़ी है बाहर बहुत सारी बाइक्स खड़ी हुई है ।

इमेज पर टेबल्स और चेयर्स पर कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं | अ टेबल पर कुछ प म पेपर्स और --